यह एक क्रिकेट मैच का दृश्य है जहाँ बीच में एक आदमी खड़ा है।

और उसके सामने एक वाइट लड़का शर्ट पहना हुआ आदमी जा रहा है।

बगल में एक पर्पल कलर का कटोरा रखा हुआ है।

और एक तरफ और कुर्सी लगी हुई है।

यह एक कैफे की तस्वीर है यहां पांच कुर्सी रखी हुई हैं।

और दीवाल की तरफ एक पर्दा लगा हुआ है।

और ऊपर की तरफ गोभी रखी हुई है जिनके बगल में केले भी रखे --

और उसके बगल में ढेर सारी पोल हैं।

यह ब्ल्यू कलर की पेंटिंग है।

उसके पीछे एक झोपड़ बना हुआ हैं।

नीचे ढेर सारी गांछे लगी हुई है।

जिसमें तीन आदमी खड़े हैं और दो आदमी टाइल्स को उठा--

एक आदमी सफेद कलर शर्ट पहने हुए खड़ा है।